यहाँं पर मुझे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल में एक बदक जैसा रिसटनी का बना हुआ दिख रहा है।

यहाँं पर मुझे मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है और दुकान में एक फ्रीजर रखा हुआ है। ऊपर वाले पर चार मिठाई की ट्रे रखी हुई है।

एक बच्चे ने मुँह पर मास्क लगाया हुआ है। व्हाइट कलर का दीवाल पर रेड कलर पूता --

यहाँ पर एक फोटो दिख रहा हैं जहाँ बाहर कुछ व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहे हैं।